और यह होल व्हाइट रंग का है।

सामने एक बहुत बड़ी इमारत दिखाई दे रही है जिसका रंग रेड कलर का है और यह ए --

सामने एक टॉयज की शॉप दिखाई दे रही है।

लड़कियों के कोय हैं ये बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

सामने से एक ऑटो आता दिखाई दे रहा है और कुछ व्हीकल्स भी खड़े है।

एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

सामने एक टेबल पर कुछ सामान पड़े हुए हैं जिनमें से एक दरी दिखाई दे रही।

उसके दूसरी साइड एक इमारत दिखाई दे रही है और--

में एक नदी दिखाई दे रही है यह नदी बहुत ही चौड़ी दिखाई दे रही है।

आ रहे हैं और कुछ लोग लेने के लिए--

के साथ में एक रोड भी दिखाई दे रहा है और यहां पर--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

सामने एक बहुत बड़ी पानी की झील दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारा--